जो जमीन के नपाई कर रहा है। यहाँ पर सारे फर्श के पत्थर टूट गऐ हैं। यह उन्हे नाप रहा है।

ये सैलून का नाम है सिटी सेंटर सैलून यहाँ पर गोपाल गंज भी लिखा है | यही गोपालगंज के नाम इंसान की दुकान है।